यहाँ पर कुछ टाइल्स सड़क निकली दिखाई दे रही है यहाँ पे कुछ छोटे - छोटे बांस लगे हुए दिखाई दे रहे है ऊपर बादल दिखाई दे रहे है।